एक बडा सा टुरिज्म प्लेस दिखाई दे रहा है यहाँ बहूत सारे लोग दिखाई दे रहे है अलग अलग प्रकार के पेड पौधे व फुल दिखाई दे रहा है।

मंदिर कि खिडकीया दिखाई दे रही है उपर झंडा दिखाई दे रहा है पेड पौधे दिखाई दे रहे है कुछ घरे दिखाई दे रहे है।

लोहे कि गेट और रेलिंग्स दिखायी दे रहा है एक व्यक्ती दिखाई दे रहा है कार व स्कुटी दिखाई दे रहा है पोस्टर व ए सी दिखाई दे रहा है।

एक नाली दिखाई दे रहा है पेड पौधे दिखाई दे रहे है।

एक बड़ा सा भवन दिखाई दे रहा है भवन में बहुत सारे खिड़कियाँ व लोहे की दरवाज़े दिखाई दे रही है पोस्टरे दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है चर्च के दीवारों पर बहुत सारे खिड़कियाँ और दरवाज़े दिखाई रहे है।

एक सड़क दिखाई दे रहा है सड़क के किनारे कुछ गाड़िया दिखाई दे रहा है कुछ लोग दिखाई दे रहे है दुकाने दिखाई दे रही है।